बने हुए दिखाई दे रहें हैं।

दे रही है उस दुकान में जय श्री श्याम लिखा हुआ है।

ढोलक दिखाई दे रही है ढोलक के पास में एक--

इस फोटो में एक हाईवे दिखाई दे रहा है उस--

टोल टैक्स दिखाई दे रहा है।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

वहीं पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

उस मॉल में अलग अलग तरह के बैनर दिखाई दे रहे हैं।

उसे ठेले में सैंडविच दिखाई दे रहे हैं उस ठेले में बेक समोसे दिखाई दे रहे --

दे रहा है वह आदमी फर्नीचर का काम कर रहा है।